यह एक कपड़ा का मॉल है यहाँ पे बहुत सारे कपड़े है बहुत कच्चे-अच्छे दिख रहे है |

सफ़ेद कपड़े हैं बहुत अच्छे-अच्छे दिख रहें हैं हमको ख़रीदना है।

यहाँ एक गेट हैबहोत सुंदर दिखाई देता हैवहाँ पे पेड़-पौधे हैं।

यह एक शहर है यहाँ पे बहुत सारे --

इसका एक मुँह भी है उसका नाक भी है मुँह भी --

इसके पत्ते हरे रंग के हैं।

यहाँ पे हरे रंग के पेड़-पौधे दिख रहें हैं।

और ऊपर पहाड़ है। पहाड़ हल्का-हल्का नीला रंग का दिखाई दे रहा है। सूर्य का प्र --

यहाँ पे एक गौरैया दिखाई दे रहा हैं।

और एक आदमी भी है। यहाँ पे पर्स रखे हुए हैं कैची रखे हुए हैं।

बेड में लिखे हुए है टोल।

कंप्यूटर भी हैं। यहाँ पे बैंक का काम चल रहा है।

ये चांदी के कुर्सी दिखाई दे रही है और मार्बल के दिवार लगे हुए है |